हा सार्वजनिक मेला के तरह एक बच्चों का खेलने कूदने का एक समारोह हुआ है जिसमे तरह तरह की--

अपने रोजमर्रा जरूरत को पूरा करने के लिए लोग कतारबद्ध ए.टी.एम. के सामने मे खड़ा हुआ है।

और ये सामने में नाई दिख रहा है मिरर दिख रहा है बोतल दिख रहा है धन्यवाद--

और ये ये बंदा है जिनके साथ में बहोत सारा लोग अटैचमेन्ट किए हुए हैं।